यहां पे योगा होता है और यहां के योगा टीचर बहोत अच्छे हैं और यहां बहुत ही अच्छा योगा होता है सारे लोगो को बहोत ही अच्छा सिखाया जाता है और सब फिट भी है और बहुत अच्छा लगा यहां पे देख के यह सब।

यह एक घर है और एक बच्चा यहां पे फूल में पानी डाल रहा है और उम्म काफी सारे बगीचे में पेड़ ओढ़ब है और फूल लगे है और सारे अच्छे लग रहे है देख के बहुत ही अच्छा एक लड़का पानी पटा रहा है वहां पे।

ईई इ यहां पे खुला आसमान है और खुले आसमान के बीच हरे भरे खेत है और यह खेतों में बीज लगा हुआ है और हम्म खेतो के बीच एक छोटा सा पोखरा है उसमे बहुत अच्छा नज़ारा है यहां का हरियाली है और बीज लगा हुआ है।

यह एक मछली मार्किट है जो छोटे से बड़े मछलियाँ सारे मछलियां यहाँ पे मिलती है और उम्म सारे मछलियां आपको यहाँ मिल जाएगी उचित मूल्ये पर बहुत ही बड़ा - बड़ा मछलियां है यहाँ पे छोटी बड़े सारे मछलियां मछलियां है यहाँ पर मिलेगी आ --